यहां पर एक पिलो रखा है जिसमें सफेद कलर का कवर चढ़ा हुआ है।

है यहां पर एक गार्डन है।

इस पिक्चर में एक काली कलर की कार दिखाई दे रही है।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

यहां पर एक काले कलर की मोटरसाइकिल खड़ी हुई है।

यहां पर साइड में एक पंखा लगा हुआ है।

यहां पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है।

यहां पर एक आदमी सफाई कर रहा है।

पेट्रोल पंप के बाजू से दो बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पर बहोत सारे ट्रक खड़े हुए हैं।

यहां पर तीन गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

यहां पर छोटी छोटी सफेद बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं।

यहां पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगी हुई है यहां पर बहुत सारे पाईप लगे हुए हैं।

यहां पर बहोत सारी औरतें पूजा करने के लिए आई हुई है।

यहाँ पर बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहें हैं।

यहां पर पालने भी रखे हुए हैं यहां पर दीवार पे नारंगी कलर किया गया है।

यहाँ पर एक गार्डन बना हुआ है।

यहां पर आसमान में काले बादल छाए हुए हैं।

यहां पर नीचे एक हरी चटाई बिछी हुई है।

यहां पर एक लाल रंग का कपड़ा नीचे बिछा हुआ है।

यहां पर सफेद कलर की टाइल्स नीचे लगी हुई हैं।

यह पिक्चर रेलवे ट्रैक की है।